शीशा का गेट है मुफ़्ती का और यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है जोकि मुफ़्ती का ऑनर का नंबर होगा ।